और यहां पे बगल बगल में काफी सारे पानी है जो की दूर में है।

और यहां पर दूर में काफी सारे घास दिखाई दे रही हैं।

यहां पर काफी सारे महिला दिखाई दे रही हैं काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर काफी सारी कुर्सियां रखी हुई है एक फ्रिज लगा हुआ हैं बगल में--

पीछे झंडा दिखाई दे रहा है और नीचे काफी सारे घास दिखाई दे रहे जो कि बगल में है।

यहां पर आगे काफी सारे घास दिखाई दे रही है बगल अगल में झाड़ दिखाई दे रही है।

यहां पर चटनी भी दिखाई दे रही है एक फूल दिखाई दे रहा है।

और नीचे काफी सारे गमले रखे हुए हैं खटिया पड़े हुए हैं।

और दो तीन पेड़ भी दिखाई दे रहा है तीन चार यहां पे पिलर दिखाई दे रहे है जोकि काफी मोटे मोटे है।

और बगल में काफी सारी पत्तिया भी नीचे काफी सारे पड़े हैं। इस बगल में काफी सारे पत्तियां हैं।

दो तीन खिड़कियां दिखाई दे रहा है एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जो की दूर में लगा हुआ है।

यहां पर एक चॉइस करके लिखा हुआ है कुछ जो कि बोर्ड में बना हुआ है।

एक बंबू दिखाई दे रहा है। इस साइड में भी दो तीन बंबू इस साइड में भी दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक नदी दिखाई दे रही है जो की काफी छोटी दिखाई दे रही है।

और नीचे काफी सारे घासे दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे--

दूर में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर टेबल दिखाई दे रहा है जो की काफी सारे हैं इस साइड में भी।

और दूर दूर में यहां पर काफी सारे बादल दिखाई दे रहे हैं जो की काफी दूर है।